अच्छा ते उसका कलर व्हाइट है एक बहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

पर लाइटिंग लगी है ब्लैक कलर की पंखीहै कुछ लोग --